अभी प्रवेश स्टार्ट है यहां पर दो लोग खड़े स्कूल के आगे बाइक लेके --

सवारी के लिए आते हैं यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो रखी है सभी लोग--

बहोत बड़ा प्लेटफार्म है लोग यहां पर बैठते है यहां पर बेंचे लगी हुई हैं यहां कर पानी की व्यवस्था भी है यहां पर पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए है।

ऊपर लाइटें सुंदर लगी हुई है जो अलग स्टाइल की लाइट है डेकोरेट किया हुआ है।

ये पुतले बना के रखे हुए है जो बच्चे देखते है तो लगता है ये असली है लेकिन ये शेर के असली नहीं है।

ये एक गाड़ियों का ग्रेज है इसमें गाड़ियों को ठीक करने के लोग यहां ले के आते हैं खराब गाड़ियां यहां पर सही करके गाड़ियां दी जाती हैं।

और लोगों की समस्या का हाल होता है बाहर एक बाइक खड़ी हुई है।